पेंटहॉउस का कलर है अम ऑरेंज एंड वाइट और यह बहोत ही सुंदर लग रहा है।

काफी पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं जो की एक्जाम्स अप-कमिंग एक्जाम्स के हैं और कुछ नई बुक्स जिनके ऑथर के हैं।

यहां काफी फॉउर है और एक बिल्डिग के सामने एक ऑटो कार खड़ी है और उसको काफी कवर किया गया है और उसमे दो बैनर्स भी लगे है।

आसपास पेड़-पौधे भी है उस बिल्डिंग का कलर थोड़ा अ फेड हो चुका है उसके आसपास काफी पेड़-पौधे दिख रहे है और काफी और एक व्हीकल पे तीन लोग बैठे है दो-तीन कारे दिख रहा है और दो तीन रूम्स है यहां पर जिसके बाहर लोग खड़े है।

और यहाँ पर आस-पास काफी व्हीकल्स खड़े है और यहाँ पे मैन डोर है काफी विंडोज़ --

यह एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिसपे उसका नाम लिखा गया है और आसपास काफी पेड़-पौधे है इस बिल्डिंग का कलर ब्लू और व्हाइट है उसके पास में एक टॉवर भी लगा हुआ जिससे पावर सप्लाई होती है।

यह एक बैंक की शाखा है जिसका अअ डोर अभी क्लोज है और अंदर ग्रीन कलर के बोर्ड से कुछ-कुछ लिखा हुआ है।

ये एक गवर्नमेंट ऑफिस लग रहा है जिसकी बिल्डिंग का कलर फेड हो चूका है आगे काफी व्हीकल्स खड़े है जैसे की कार और मोटरसाइकिल और कुछ लोग भी बाहर खड़े हैं और वह बिल्डिंग काफी बड़ी है उसमें काफी बड़ी-बड़ी विंडोज हैं और कुछ डोर हैं जोकि ब्लैक कलर का है।

ये एक बैंक की शाखा है जो कि बंद है और उसकी शटर पे भी बैंक का साइन लगा हुआ है और हिंदी में बैंक का नाम लिखा हुआ है बैनर पे भी बैंक का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर से स्टेयर्स जा रही है।